बाहर भी कुछ लोग है जिन्होंने अपनी दुकाने सजाई हुई है अंदर भी बहुत सारी दुकाने है और एक स्टेज भी है जहां पे लोग अपना कला दिखा रहे--

ये तस्वीर एक छत के ढलाई होने की है जिसमें सात मजदूर ढलाई के काम में लगे हुए है।

दिनाजपुरमें सिचुएटेड है यहाँ पर कुछ लड़कियाँ योगा करती हुई दिखाई दे रही हैं।

ये एक सरकारी ऑफिस दिखाई दे रही है जिसमें मे दो गाड़ियाँ नजर आ रही है कुछ लोग नजर आ रहे है जिसमें से सफेद गाड़ी जो नजर आ रही है वो गाड़ी डिस्टिक मजिस्ट्रेट की गाड़ी हैं।

एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर बाहर लॉन में दो टेबल लगे हैं और चार कुर्सियां हर एक टेबल के तरफ है थोड़ी दूर पर एक खाट नज़र आ रही है।

ये एक पुरानी ऐतिहासिक मंदिर का एक तरफ का सीनरी नजर आ रहा हैं जिसमें प्राचीन काल के कला का प्रदर्शन हैं।

ये ऐसा लग रहा है कि शाम का नज़ारा है क्योंकि अभी रोशनी इसमें जली हुई है इससे देखकर पता चलता है शाम होने वाली है और इसलिए हर तरफ रोशनी बत्ती जलाई गई है।

ऑफिस का बाहरी दरवाजा है जिसका नाम श्रम विभाग है जिला कबीरदाम छत्तीसगढ़ का कार्यालय श्रम पदाधिकारी का है।

और यह जो पत्थर और चट्टान दिखाई दे रहे है इस चट्टान का रंग सफेद दिखाई दे रहा है और पड़ पा पहाड़ी के उस पार नीला-नीला आसमान बहोत ही खूबसूरत नज़ारा है।

एक डी.जे सेटअप दिखाई दे रहा है जिसमें आठ साउंड बॉक्स लगे हुए हैं और इसका बोर्ड पे लिखा हुआ है उमेश डी.जे साउंड पांडातराई --

जिसपे बहुत सारे साउंड बॉक्स ऊपर में है और जिसका जो ब-- फीता है वो ये ऑरेंज का हैं।

पहाड़ी के उस पार कुछ उचाई पे ऐसा लग रहा हैं कुछ बनाया गया हैं जो कि टूरिस प्लेस जैसा दिखाई दे रहा हैं।

बोर्ड जो लगा हुआ है वो सफेद कलर का है और सी एस इ बोल्ड लेटर्स मे लिखे हुए है जिसके नीचे ई गॉवर्मेंट सर्विस इंडिया सर्विसेस इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम नजर आ रहा है जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटरस खड़े हैं रंग-बिरंगे इलेक्ट्रिक स्कूटरस हैं।